कोचिंग सेंटर में बहुत ही अच्छा पढ़ाई होती है।

यहाँ पे बोहोत सारे आदमी रहते हुए हैं। यहाँ पे दो औरत गप कर रही है। बोहोत सारे आदमी यहाँ घर में रहते हैं।

यह एक महजिद है। यह महजिद बहोत बड़ी है। यह महजिद में मुस्लिम लोग यहाँ पे नवाज अदा करने के लिए जुमा करने के लिए महजिद में आते हैं। यह मस्जिद में --

होटल में लोग बुकिंग भी करते हैं। बहोत सारे आदमी आए है।

यहाँ पे सभी जोगिंग कर रहे हैं।

यह एक दुकान है। इस दुकान में बहोत सारे --

इस मेले में बहुत सारे झूले भी आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी आए --

यह एक हॉस्पिटल है। यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा है।

यहाँ पे काम कर रहे हैं। ईटा गिट्टी बालू गिराए गए हैं।

सभी इसाई लोग चर्च में आते हैं। मोमबत्ती जलाते हैं। रा --

यहाँ पे लोग फिनांस पे भी गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम में आते हैं।